ये एक व्यक्ति है जो कि अपने कपड़ों पर स्त्री मार रहा है।

आस पास बहुत हरियाली है उसकी लंबाई भी अच्छी खासी है और यह किसी पहाड़ी इलाकों--

योगा के लिए चटाइयां बिछी हुई है कुछ लोग योगा कर रहे हैं कुछ लोग कसरत कर रहे हैं।

नीचे से जाने का रास्ता भी है और सामने मिट्टी वाला मैदान है जिसपे लोग बैठे हुए हैं कुछ साइकल लेक--

बच्चियों ने अपने हाथ को ऊपर कर रखा है जो शायद--

एक झरने का दृश्य लग रहा है यहां पे झरना बह रहा है बहुत सारा पानी एकत्र हो चुका है।